मैं यहाँ देख सकती हूँ कि एक बड़ा बड़ा बहुत बड़ा नदी है नदी के अंदर नाव है दो और उसके --

नाव के अंदर बहुत सारे आदमी लोग बैठे हैं नाव एक साइड का नाव --

और उसके साइड में फ्रॉक टंगा हुआ है और एक आदमी झूठ मूठ का खड़ा है।

चिपका गया है और गार्डन बहुत सुंदर है उसके बाद उसके बाजू सामने एक हॉल है।

सामाने अलग-अलग कलर की अलग-अलग --

चीज क्रीम है और एक आदमी लेटा हुआ है।

पत्थर हुए और पानी बहुत जोर-जोर का आ रहा है।

और स्टूडेंट जा रहे हैं और गेटे हैं और कंपाउंड किया है कॉलेज के अंदर और बड़े-बड़े पौधे दिख रहे हैं।

कचरा डालने के लिए डस्टबिन है और गार्डन के अंदर बड़े बड़े पौधे हैं और छोटे छोटे पौधे हैं।

और गैरेज के अंदर हो धोने वाली पानी की टंकी है और ब बड़ा गैरेज है।

और होटेल के अंदर फॅन लगा गया है।

मैं यहां पर देख रही हूं कि बहुत बड़ी नदी है नदी के अंदर बोट बोटिंग है।

और कुछ तो काले अक्षरों में भिंती के ऊपर कुछ लिखा है।

घर के आसपास गार्डन बना गया है।

कोई अपना अपना काम कर रहा है और उसके साइड में घर दिख रहे हैं।